यहाँ पर बहोत सा घर रिक्सा भी दिखाई दिए यहाँ पर मशीने भी दिए यहाँ पर दुकान भी दिखाई दी दुकान पर बोरी भी लगी हुई दिखाई दे रही यहाँ पर पेड़ लगे भी दिखाई दीं--

मजदूर भी काम करे हुए दिखाई दे रहे है आस पास पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर आसपास और भी बिल्डिंगें बनी दिखाई दे रही है ऐ-ब लेंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है।